इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक लड़की की है।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक रोड की है रोड के सामने एक बस डिपो है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक रिक्शे की है।

इस तस्वीर में जो फोटो ये एक ज्वेलरी दुकान की हैं।

चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।